और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं एक पेड़ पौधो का सर्कल दिखाई दे रहा है और उससे लोग खड़े हैं।

इमेज में गार्डन दिखाई रहा है उस में बहुत से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं उस में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।